और एक व्हाइट शर्ट पड़ी है बाहर--

और सामने कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

और इन्होंने अपने अपने रजिस्टर जो अपने पास रखे हैं।

ये कुछ अ केबिन बने हुए हैं और अपने अपने केबिन में जो चेयर लगी हुई है।

और मॉल में जो सामने तीन पुतले नजर आ रहे हैं।

ये गुरुनानक वैष्णो ढाबा जो लिखा हुआ है ऊपर।

और एक आदमी जो जा रहा है उसकी तरफ--

और जहां काफी सारे जो पुराने टायर पड़े हुए हैं।

और इसमें अलग अलग कलर का जो फ्लेवर पड़ा है।

इंजेक्शन वगैरा है वो नजर आ रहे हैं।

जय कालीचरण करमचंद जो बोर्ड पे लिखा हुआ है।

और इदली साइड जो फ्लावर भी निकले हुए हैं ऊपर छत पे--

और पिंक शर्ट पहने जो आदमी नीचे खड़ा--

और उसके पीछे जो एक एक्टिवा है और एक जो सामने शिशा भी नजर आ रहा है।

ये एक मार्बल की शॉप है।

ओ इनको जो सेट करके रखा हुआ हैं।

बहोत सारी लाइटें जो छत में जो--

और इन लोगों ने जो इकट्ठे जो साइकिल निकाले--

और सामने नीचे जो ट्रोज बने हुए हैं।

और कुछ अ बिजली की तारें भी सामने नजर आ--